इस तस्वीर मे मुझे एक लाल कलर की बिल्डिंग देखने को मिल रही है एसा लगता है ये बिल्डिंग डाक खाने की है।

और एक बच्चा देख पा रहा हूँ जो पगड़ी पहन के है और एक आदमी काला कलर का कुर्ता मे खड़ा है।